बॉक्स में रखे हुए एक पानी का आपको टैंक भी दिख रहा होगा बगल में बहुत सारे डब्बे वैगैरा भी रखे है एंड आपको लाइट का होल्डर वगैरा भी दिख रहा होगा।

हेलो एवरीवन जैसा की आप देख रहे है आप के सामने यहां पर बहुत बड़ी मशीन रखी हुई लड़का है जो मशीन पर बैठा हुआ है।

फ्लावर्स वगैरह दिख रहे होंगे ब्लैक कलर की पत्ती दिख रही होगी आपको उसके बगल--